ये पुरानी जैसी बिल्डिंग है काफी बड़ी इमारत है कॉलेज या हॉस्पिटल की किसकी है पता नहीं।

यहाँ पर बच्चों को मेडिकल वालों को ट्रेनिंग दी जाती है सिखाया जाता है।

ये किसी पहाड़ी एरिये की लोकेशन है। ये रास्ता जा रहा पहाड़ी एरिया में निचे अंदर को गहराई है आगे कुछ --

ये दुकान है फूलों की जैसे पूजा पाठ के लिए भी यहाँ से फूल लाते हैं लेकिन दूसरे रेडिमेड --